यहां पर अंदर जाने के लिए एक गेट बना हुआ है।

इस फोटो में कई सोफे रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक फ् बैनर लगा है जिस पर टेन ग्राम्स लिखा हुआ है।

एक नंबर प्लेट पर एम_पी छत्तीस एम_एच नवास अट्ठारह नवासी लिखा हुआ है।

यहां पर कई लोग बैठे हुए हैं वह योगासन कर रहे हैं।

यहां पर कुछ पेड़ झाड़ी नुमा दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ एक बैनर टंगा है जिस पर पीस लिखा हुआ है।

यहां पर सीमेंट की ईटों का प्रयोग किया जा रहा है।

गेट पर लाल रंग की पेंट है और नीचे थमलाे पर हरे रंग की पेंट है।